काफी हरियाली दिखाई दे रही है | पेड पौधे लगे हुए हैं | फार्म हाउस का --

गाय का अस्तबल दिख रहा है | एक गाय का बछड़ा दिख रहा है |

कुछ कछुवे दिखाई दे रहे है जल का स्त्रोत दिख रहा है।

कुछ व्रक्ष दिखाई दे रहे हें।